यहां मैं एक इमारत देख सकती हूं जो कि तीन मंजिला दिखाई दे रहा है।

यहां सामने में एक तबेले में बैठे गधों का दृश्य देख सकती हूं यहां पे आगे की तरफ मुझे दो गधे दिखाई दे रहे हैं।

सामने में लोगों को आने जाने के लिए एक सुंदर सा टेंट लगाया गया है।

नीचे की तरफ बहोत ज्यादा लाइटिंग लगाई गई है।